काउंटर पर बियर के बॉटल्स रखे हुए दिख रहे है।

यहां बहोत सारे खंभे लगे हुए दिख रहे हैं।

यह एक चर्च का दृश्य है यहां काफी सारे लोग प्रेयर करते हुए दिखाई दे रहे हैं।

यहां काफी शीशे लगे हुए हैं यहां बहोत सारे जिम के इक्विपमेंट रखे हुए दिखाई दे रहे --

यह एक पेट्रोल पंप का दृश्य है।

यहां एक लोहे का गेट बना हुआ है।

यह एक नर्सरी का दृश्य है यहां काफी सारे पौधे रखे हुए दिख रहे हैं।

यहां एक पंचिंग बैग दिखाई दे रहा है।

यह काउंटर वन काउंटर टू काउंटर तीन लिखा हुआ दिख रहा है।

बड़े अक्षरों में बी डी वर्ल्ड स्कूल लिखा दिख रहा है।

यह एक काफी सुंदर रेस्टोरेंट बार है यहां काफी सारे चेयर्स लगे हुए दिखाई दे रहे हैं।

एक बियर का बॉटल रखा हुआ दिख रहा है।

यहां बहोत सारी गाड़ियां जाती हुई दिख रही है।

यहां बहुत सारी मशीने लगी हुई हैं।

यहां एक बेंच लगा हुआ है।

काफी सारी चट्टानें और पत्थर रखे हुए हैं।

यहां कुछ सफेद कप्स और प्लेट रखे हुए हैं।

पीले रंग के बोर्ड में रांची लिखा हुआ दिख रहा है।

यहां एक शटर गेट लगा हुआ है।

यहां एक आदमी दिखाई दे रहा है।

एक विश्लेषण बोर्ड लगा हुआ दिख रहा है।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

एक मौलवी दिखाई दे रहे है यहां काफी सारे स्टूल रखे हुए है।

यहां पानी का बहाव काफी तेज है।

यहां काफी सारी बाइक किनारे पर पार्क है।

यहाँ बहोत सारे लोग टहलते हुए दिखाई दे रहे हैं यहां कुछ ऑटो चलती हुई दिख रही हैं।